आपका फिर से स्वागत है हम इस send mail from not set in php dot ini एरर को कैसे व्यवस्थित करें
हमने निर्धारित नहीं किया है कि यह इमेल किसके तरफ से है
इमेल भेजने के लिए हमें यह करने की आवश्यकता है
हम यहाँ from पैरामीटर जैसा कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे
हमें विशेष हैडर्स को भेजने की आवश्यकता है
अतः यहाँ हम headers वेरिएबल बनाते हैं जो कि me @mecom जैसे कुछ के समान नहीं है
हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेल हैडर के साथ कार्य करने की जरूरत है जो है from: और कोलन न कि सेमीकोलन और फिर हम लिखते हैं उदाहरणस्वरूप php academy
या आप admin @php academy जैसा कुछ लिख सकते हैं और com जोड़ें यदि आप चाहते हैं
वास्तव में मेरे पास वह डोमैन नाम नहीं है लेकिन हम इसे उसी की तरह रखेंगे
अतः from: admin @phpacademycom
अपने मेल के अंदर हम अन्य पैरामीटर को जोड़ने की आवश्यकता है जो कि headers है
तथा अब हम यहाँ आते हैं और आप यहाँ alex और यहाँ this is a test! टाइप कर सकते हैं
send me this पर क्लिक करें और हमें अन्य एरर नजर आती है
अब वास्तव में मैं मेरे कम्प्यूटर पर मेल सर्वर नहीं चला रहा हूँ
यदि आप अपने कम्प्यूटर पर मेल सर्वर नहीं चलाना चाहते हैं तो मेल सर्वर मेल फ्री के लिए गूगल पर ढ़ूंढें और यह आपके कम्प्यूटर पर मेल सर्वर संस्थापित करेगा जैसे कि अभी हम लोकल होस्ट पर चला रहे हैं
तथा आपके पास लोकल हॉस्ट के तहत चलने वाला smtp मेल सर्वर होगा
अब जैसा कि मेरे पास मेल सर्वर नहीं है मैं अपने विश्वविद्यालय के ईमेल सिस्टम का उपयोग करूँगा जो कि मेरे विश्वविद्यालय ईमेल पर dns या domain name server डोमैन नेम सर्वर है
इस तरीके से मेरा ईमेल मेरे विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजा जाता है
यदि आप विशेष dns सर्वर के बारे में जानते हैं यदि आपके पास डोमैन नेम पहले से ही है यदि आपकी वेबसाइट है तो आप इसे जानेंगे या कम से कम आप इसका पता लगाने में सक्षम होंगे
आप इसके माध्यम से ईमेल भेजने के लिए सक्षम होंगे
मैं जानता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय का ईमेल dns सर्वर mailhost dot shef dot ac dot uk है क्योंकि मैं शेफील्ड sheffield विश्वविद्यालय में हूँ
अतः मुझे इसे मेरे php dot ini में शामिल करने की आवश्यकता है
और इसको करने का सही तरीका है कि यहाँ आएँ और अपने वेरिएबल्स को सेट करें
ओके हमें php dot ini में smtp सेट करने की आवश्यकता है
और मेरी php dot ini फाइल खोलने के बजाय मैं ini set फंक्शन का उपयोग करूँगा
और वेरिएबल नेम है smtp
अतः हम अपनी php dot ini फाइल में इस लाइन को एडिट कर रहे हैं
और मैं वेल्यू के रूप में यहाँ मेल होस्ट करता हूँ
यहाँ हम echo get ini लिखते हैं जिसे एक विशेष वेल्यू मिलती है
आगे मैं smtp लिखूँगा और वह यहाँ स्क्रिप्ट को नष्ट कर सकता है
अतः हम देख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है
अतः मैं लिखता हूँ alex और फिर test और send me this पर क्लिक करता हूँ
ओह ! माफ कीजिए मैंने पूर्ण गलत टाइप कर दिया है बड़ी गलती वह है ini get और इसे रिफ्रेश करें
ओके हम मूलतः mail host dot shef dot ac dot uk के लिए अपनी ini फाइल में अपनी smtp सेटिंग कर रहे हैं
और फिर हम इसकी वेल्यू एको करेंगे
अतः यह मुझे बताता है कि वह mail host dot shef dot ac dot uk के रूप में सेट हो गया है
मान लीजिए कि यह मेल हॉस्ट सर्वर या dns सर्वर कार्य करता है फिर बाकी कोड कार्य करेंगे
अपना मेल भेजने के बाद मैं पेज को नष्ट कर दूँगा
नहीं मैं नहीं करूँगा मैं पेज को अभी नष्ट कर दूँगा
चलिए वापस चलते हैं और लिखते हैं alex और this is a test
देख रहा हूँ कि सबकुछ ठीक है हमारे पास मेरा to मेरा subject मेरा from:admin@phpacademycom नामक headers है
और हमारी बॉडी यहाँ है और हम अपने मेल फंक्शन को निष्पादित कर रहे हैं
अतः जब मैं send me this पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता हमें कोई एरर नहीं मिली अतः हम मान सकते हैं कि सबकुछ कार्य करता है
यदि मैं मेरे हॉटमेल और ईमेल पर आता हूँ और मेरे इनबॉक्स पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमें अभी admin @ phpacademy dot com से एक मेल मिला है
यदि हम इस पर क्लिक करते हैं हमें अपनी सब्जेक्ट लाइन में email from phpacademy मिलता है जिसे हमने यहाँ सेट किया है
और हमारे पास ईमेल पता है जिसे मैंने निर्दिष्ट किया है
आप इसे इसी तरह ऐलेक्स से या phpacademy से रख सकते हैं
और फिर हमारे पास this is an email from alex है जो नाम हमने यहाँ फार्म के अंदर दिया है
और फिर हमारे पास 2 लाइन ब्रेक है जो कि 1 और 2 है
और this is a test यह वह टेक्स्ट है जिसे मैंने वहाँ रखा है
अतः मेरे विश्वविद्यालय के dns मेल सर्वर का उपयोग करके यह मेल फंक्शन है
आपका insp एक dns मेल सर्वर होगा
इसमें ऑथेन्टिकैशन की आवश्यकता हो सकती है जिसमें मैं ट्यूटोरियल को जल्दी ही पूर्ण करूँगा
अतः यदि यह कार्य नहीं कर रहा है तो यह ट्यूटोरियल देखें या मुझे ईमेल करें या मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे संपर्क करें
ओके तो उम्मीद है यह कई लोगों के लिए उपयोगी होगा
कृपया सब्स्क्राइब करें यदि आपने पहले नहीं किया है